इस कमरे को बहुत कल्चरल तरफ से बनाया गया है।

और यहां पर कुछ चेयर्स पर भी बैठे हैं।

और आगे एक लड़का ने टोपी पहना हुआ है सफेद रंग का।

और केक के ऊपर में फिर किट केट और बहोत सारे मिथाइयां है।

और अंदर में भी बहुत सारा सामान है।

और दुकान के बाहर के बगल में वाइपर भी रखा गया है।

उन लोगों के जर्सी का कलर येलो और ब्लैक है।

इस पिक्चर पर एक बहुत बड़ा सा लिंग दिखाई दे पा रहा है।

लेक के चारों तरफ पर रस्ता बना हुआ है।

रस्ते के बगल में बहुत सारा दुकान और घर दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे वहां एक फ्रिज भी है।

इस पिक्चर पर एक वॉल दिखाई दे पा रहा है।

और पीछे पर एक घर भी है।

और चार ठो टी_वी स्क्रीन है।

और बीच पे खिड़की है जिसपे पर्दा--

मिठाइयो का रंग सफेद लाल काला है।

और फिर को चारों तरफ से फेन्स से ब्लॉक किया गया है।

उसका रंग यलो कलर का है।

और नीचे पर कुछ फ्लावर से डेकोरेशन किया गया है और--

और ब्रिज के उस पार बहुत सारा छोटा सा घर लुक है।

और हर एक टेबल पर चार चार चेयर रखा हुआ है।

फार्मेसी के अंदर बहुत सारे दवाई हैं।

और यहां का तेबल का रंग काला है।

और यहां पर बहोत सारे पेड़ हैं।

ये सब बच्चे सफ़ेद कलर के कपड़ा पहना हुआ है।

बैलून का रंग ब्लू और सफेद है।

और उसके राइट साइड पे एक सफेद कलर का बिल्डिंग है।

इस पिक्चर पें मुझे एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है।

जिसका वॉल का रंग सफेद है।